फोटो ये शादी की है जहां पे आगे में--

जो एडवोकेट वहां पे है वैसा लग रहा है।

एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पे दिखाई दे रहा है।

कुछ सामान वहां पे बीच में रखा हुआ दिख रहा है तलाव के पीछे में बड़े बड़े बड़े जो है पहाड़ी दिख रही है।

रखी गई हैं और पूरे साइड में कंपाउंड दिख रहा है।

एक वाइट कलर की बड़ी डबल मंजिल दिख रही है।

पत्थर दिख रहा है आगे में पूरा गांव और कस्बा जो है--

टाइल्स नीचे में लगी हुई रोड बना है आगे में--